पीले रंग की लाइटें जल रहीं हैं।

बाहर एक कार खड़ी हुई है बहुत सारी कुंडिया रखी हुई है कुंडिया लाल रंग से पेंट हैं।

उस पर वन विहार लिखा हुआ है।

चित्र एक स्टेज का हैं स्टेज पर दो लोग खड़े हुए हैं।

गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

चित्र एक बिल्डिंग का है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

चित्र एक घर का है घर के सामने पेड़ लगे हुए हैं सूरज दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है। आस-पास कहीं पेड़ लगे हुए हैं।